ये चित्र किसी मछली बेचने वाले बाज़ार का है जो की सामने बहुत सारी दुकाने दिखाई दे रही है यानि की नीचे जमीन पर मछलियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पुरुष महिलाएँ इधर-उधर आते जाते दिखाई दे रहे है।

यह चित्र किसी नदी का है जो की सामने नदी मे है बहुत बड़ी नाव दिखाई दे रही है।

जो की बाजार मे सामने एक शोभा यात्रा जाती हुई दिखाई दे रही है और कुछ पुरुष एक साथ इकठा खड़े हुए है जो की कुछ गाना बजा रहे है और सामने कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रही है।

यह चित्र किसी बाजार का है जो की सामने एक मछली बेचने वाले की दुकान दिखाई दे रही है।

यह चित्र किसी मकान के उपर डल रही लेंटर का है क्योकि रात का समय दिखाई दे रहा है।

कुछ मजदूर ऊपर मकान के लेटर डालते हुए दिखाई दे रहे है और लाइट जगती हुई दिखाई दे रही है।

इसमे एक देवता की फोटो रखी हुई है और आसपास बहुत सारी महिलायें दिखाई दे रही है।

चित्र किसी रोड पर खड़ी बस का है जो की सामने एक बस खड़ी हुई हैऔर उसके आगे एक आदमी खड़ा हुआ है और बस के साथ में कुछ खेत भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।